जैसे की मै यहाँ पे देख पा रही हूँ तो एक बहुत ही सुंदर हॉल है। हॉल के स्टेज को बहुत सुंदर तरीके से फूलों से सजाया हुआ --

दिखाई दे रहा है सामने बैठने के लिए बहोत सारी खुर्चिया राखी गई है जो कि नीले रंग की है ऊपर बड़े-बड़े फैंस भी लगे हुए दिखाई दे रहे है।

जैसे की मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि एक बहोत बड़ा सा घर दिखाई दिखाई दे रहा है। घर के उपर बहोत सारी लइटिंग्स लगी हुई हैं।

दूर-दूर तक यहाँ पे पहाड़ है।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

घर दिखाई दे रहे हैं। वहां पर टू व्हीलर खड़ी की गई है। उसके आगे सफेद रंग की कार भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

बोहोत सारे लोग यहाँ पे जमा हुए हैं।

सामने थोड़ी घास लगी हुई है और बोहोत सारे पेड़ भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। प्लेटफॉर्म पे सामने दो चेयर्स लगी हुई दिख रही हैं।

जैसे की मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ तो एक व्यायामशाला दिखाई दे रही है। बोर्ड पे ओपन जिम लिखा गया है।

पीछे वहाँ पे पेड़ भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़े-बड़े लाइट्स लगे हुए दिख रहे हैं। अगल-बगल में थोड़े बोहोत घर हैं।

जैसे की यहाँ पे मे देख पा रही हूँ। एक पंडाल दिखाई दे रहा है। पंडाल में बहुत सारे --

वहाँ पे सभी लोग के लिए अलग-अलग चेयर है चार लोग वहाँ पर बैठ के पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।

पीछे भी एक बोहोत बड़ी सी ज़मीन नज़र आ रही है। वहां पे भी हर जगह बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

जैसे मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ तो भारतीय डाक घर के लिखा गया है बाहा --

जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूं इत्ते घर बांटने का काम चलता हुआ दिखाई दे रहा है।

जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ तो एक बोहोत ही सुंदर- सा वाटर पार्क दिखाई दे रा है वाटर पार्क में अलग-अलग तरीके के झूले लगे हुए हैं।